--बहुत सारे हाथ से बनाए हुए है चित्र दिख रहे है माटी का और एक आदमी एक आदमी फोटो खींच रहे है और आदमी खड़े हुऐ है झंडा दिख रहा है।

शौचालय दिख रहा है पाइप दिख रहें हैं बड़ा सा टंकी दिख रहा है और छावनी मतलब खपरा दिख रहा है।

ये पाइप दिख रहा है पाइप ऐसे घुमा के और ये घर जैसा दिख रहा है ऐसा कुछ दिख रहा झूला लगा है छोटा छोटा इधर लोहा का कुछ लगा हुआ है दो तीन ठो आदमी दिख रहे है।

मूर्ति कुछ को नया पेंट किये गये है और कुछ गुल्लक उल्लक टाइप से लगा हुआ है पेड़-पौधे बहुत सारे दिख रहे है।